ब्लू कलर का पेंट हो रखा है उसके साइड मे--

एक झंडा फहरा रखा है यह बिल्डिंग स्कूल की लग रही है।

सामने पेटियों में कुछ सामान रखा हुआ है।

कुछ और समय लगभग हुआ है।

इसमें कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक सबसे नीचे वाली है एक माता शेरावाली है दूसरी भी माता शेरावाली है गौ माता के भक्त हैं।

और ऊपर कुछ आइसक्रीम के पैकेट रखे हुए हैं।

उस दीवार को डेकोरेट करके उसपे--

उसके साइड में कुछ लड़के लड़कियां खड़े हुए दिखाई रहे हैं।

पीछे दो आदमी खड़े हुए हैं।

उसके जस्ट नीचे एक लड़की सुता हुआ लेटा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है उस दुकान में कुछ समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ और छोटे मोटे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है।